एक बुक स्टोर है जहाँ विभिन्न प्रकार की बूके मिलती है और इसके अंदर दो व्यति खड़े हुए हैं पास ही बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

तथा एक पिल्लर पर एक पिक्चर बनी हुई है और छत पर फेन लगा है।

यह एक दार्शनिक स्थल है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति औरतें व बच्चे बैठे व खड़े हैं।

एक नगरपालिका निगम है जो रायगढ़ मे स्थित है इसके बाहर के दीवारों पे बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए है।